ये जो फोटो में आप भीड़ देख रहे हो ये एस_बी_आई बैंक की फोटो है।

ये ओम जनरल स्टोर की दुकान का फोटो है जीसके बाहर बोर्ड पर लिखा भी हुआ है और यहां पर आपको तेल शैंपू दवाई--

ये फोटो जो आप देख रहे हो ये एक ऑफिस का फोटो है जिसके बाहर कैलेंडर लग रहा है।

और एक अह सी_पी_यू अह कंप्यूटर ऑन है जिसकी स्क्रीन पर आपको कुछ ऐप्स दिख रहे होंगे ऑन हुए।

ये दा प्रदा रिजॉर्ट्स है जिसमें मतलब आप देख सकते हो चार पांच तरह के हमारे झंडे लगे हुए है अलग अलग देशों के।

और ये ये पिंक और येलो कलर के पर्दों से सजावट की हुई है रेड रोज़ ते डेकोरेशन की हुई है इसकी।

और मुझे जैसा दिख रहा है कि इसकी चारों तरफ हरियाली और उसमें कोई वोट नहीं है ये सिर्फ एक व्यू लेने के लिए व्यू प्वाइंट है यहां का--

और शो पे दो आदमी खड़े हैं जिनके पर आपको आधे आधे दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े--

और जो नई है इस दुकान का वो दूसरे लड़के के बाल काट रहा है जो बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है वो छोटा है।

ये मनसा ढाबा है और आप यहां पर देख सकते हो की तीन गाड़ी ऑलरेडी पार्किंग में लगी हुई है।

और जहां पर आप देख सकते बनारसी साड़ी हैं सारी।

और ये प्रिंटेड साड़ी है अं बहोत अच्छा कपड़ा होता है बनारसी साड़ियों का और आप देख सकते हैं।

आस पास बहुत सारा ढेर दिख जाएगा आपको इसी तरह की साड़ियों का और जो ये एक ही साड़ी खुली हुई है।